और आसमान दिख रहा है ब्लू कलर का। नीचे कुछ मिटी सी दिख रही है।

एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसने ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा है| हाथ में वॉच पहन रखी है।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

और ये जो बिल्डिग है बिल्डिग का पेंटिंग कलर है और ब्लू कलर है और वाइट कलर से कुछ रेड कलर है। कुछ ऑरेंज कलर है और यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ सामने उसमे वाइट कलर से कुछ लिखा गया है।

और ये एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसके ब्लू कलर के जूते दिख रहे हैं और यहां पर काफ़ी सारे पेड़ दिख रहे हैं। पेड़ हरे कलर के दिख रहे हैं।